यहां पर दो रिक्शे दिख रहे है दो रिक्शों का कलर --

एक तरफ साइड में बड़ी जाल रखी है। उनका कलर क्रीम है।

कई मिला पोश्टर लगा है रेड कलर का एक पोश्टर लगा है वाइट कलर का उस पोश्टर में लाल हरे नीले रंग दिख रहे--